नजर आ रही चट्टान पर भी हरियाली नजर आ रही है।

दे रही है के साइड में मुझे हरी घास उगती नजर आ रही है.

पेड़ के नीचे गाडियां खड़ी है और कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।

हरा पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

आगे कुछ ग्राहक खड़े दिखाई दे रहे हैं।